इस फोटो में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा गेट

इस फोटो में तीन ट्रैड मेल दिखाई दे रहे हैं यह एक जिम की फोटो है पीछे दीवार में --